यहाँ एक पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप के पहले गाली खली हुई है और एक बाइक खली है।

यह एक रेस्टोरेंट है। यह टेबल लगी हुई है कुर्सियां भी हैं जग भी है गिलास है।

और पंखे लगे हैं और दीवार में पत्थर लगे हुए हैं और --

और रात हो रखी है और पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं और बाईकें भी खड़ी है और सीढ़ियाँ बनी है पेड़ सीढ़ियाँ पर भी लाइट लगी हुई है लाल हरी नीली पीली कलर की --

स्कूल के बिल्डिंग का रंग व्हाइट है और खिड़कियाँ भी लगी हुई है पेड़ पौधे भी हैं और आसमान का रंग नीला है और बादल सफेद कलर के हैं।

यहाँ एक स्कूल है स्कूल के अंदर क्लासरूम है वहां पर अभी कोई नहीं है और सामने बोर्द बोर्ड लगा हुआ है।

आसमान का रंग नीला है और बादल सफेद कलर के हैं और अगल-बगल पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं। घांस भी है हरी -हरी और पानी नीले कलर का है और सूरज निक --

और बादल सफ़ेद कलर के है और पेड़ भी लगे हुए हैं और कुछ लोग चल रहे है और कुछ लोगो ने बैग टांग रखा है।

यहाँ एक पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप के ऊपर लगा हुआ है कलर का।

यह एक ग्राउंड है। ग्राउंड में लोग खेल रहे हैं और बगल में एक घर भी है और घर मम में खिड़कियां लगी हुई है और दरवाजे भी हैं और चारों तरफ तार लग --

पहाल में पेड़ पौधे लगे हुए हैं और कुछ बना भी हुआ है और आसमान नीले कलर का है बादल सफेद कलर के हैं और बहुत सारे पहाल हैं।

यह तीन रेल की पटरियां है और कुछ जन खड़े हुए हैं और ऊपर खम्बे लगे हुए हैं।

घास हरी कलर की है। पेड़ भी हरे है और आसमान का रंग नीला है और बादल सफ़ेद कलर के है और --